java में array operations पर spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में आप सीखेंगे कि
class arrays को कैसे import करें और
arrays पर सामान्य operations कैसे करें
इस tutorial में हम उपयोग कर रहे हैं
इस tutorial के लिए आपको java में arrays का ज्ञान होना चाहिए
यदि नहीं तो संबंधित tutorials के लिए दिखाइ गई हमारी website पर जाएँ
array operations के लिए methods class में उपलब्ध होते हैं arrays कहलाते हैं
उनको access करने के लिए हमें class को import करने की आवश्यकता होती है
यह statement import java util arrays semicolon के कारण पूरा होता है
हम method को class से access कर सकते हैं
हम इसको dot और method name को जोडकर करते हैं
अतः arrays dot tostring अर्थात tostring method arrays class से है
अब eclipse पर जाएँ
हमने पहले से ही class arraysdemo बना दिया है
अब class arrays को import करें
import statement को class की परिभाषा से पहले लिखा जाता है
अतः public class से पहले type करें
import java util arrays semicolon
यह statement दर्शाता है कि java में util नामक package होता है जो class arrays को सम्मिलित करता है और यह imported होता है
add एक array को जोडें
main function में type करें
int marks open और close square brackets equal to brackets में 27548
अब arrays की string दर्शाने के लिए और इसे print करने के लिए हम arrays class में उपलब्ध method का उपयोग करेंगे
अतः type करें string mstr equal to arrays dot tostring parentheses parentheses में हम arrays का name देंगे जो है marks
अब यह tostring method array के string का वर्णन करेगा
हम अंक print करेंगे
अतः type करें system dot out dot println parentheses में type करें mstr
अब output देखें अतः program को so और now करें
जैसा हम output में देख सकते हैं tostring method ने array के string का वर्णन किया है
अब array के elements को श्रेणीकरण में देखते हैं
अतः line arrays dot tostring से पहले type करें arrays dot sort parentheses में arrays का name जो है marks
अतः arrays class में sort method इसमें passed किए गए arrays के elements को श्रेणीबद्ध करता है
अब हम array marks को श्रेणीबद्ध कर रहे हैं और फिर इसके string प्रारूप को प्रिंट करेंगे
आउटुपट देखें so और रन करें
हम output में देख सकते हैं sort method array को आरोही क्रम में श्रेणीबद्ध करता है
ध्यान दें कि sort method स्वयं array बदलता है
इस प्रकार के श्रेणीकरण को inplace sorting कहते हैं
इसका मतलब है कि array जिसमें elements सम्मिलित होते हैं वे श्रेणीकरण के परिणाम स्वरूप बदलता है
अगला method हम fill देखने जा रहे हैं
fill method दो arguments लेता है
श्रेणीकरण line को हटाएँ और
type करें arrays dot fill brackets में arrays का name जो marks है
यह हमारा पहला argument है और दूसरी value जो array में लगेगा हम इसे 6 देते हैं और semicolon सेव और रन करें
जैसा कि हम देख सकते हैं name के अनुसार fill method दिए गए argument के साथ जो 6 है अरैज भरता है
हम अगला method copyof देखने जा रहे हैं
हम अरै marks के सभी elements को अरै markscopy में copy करने जा रहे हैं
अतः arrays dot fill को हटाएँ
और type करें int markscopy ;
अगली line type करें markscopy = arrays copyof marks 5;
यह method दो arguments लेता है
पहला argument array का name है जिससे आप elements copy करना चाहते हैं जो marks है
दूसरा elements की संख्या है यहाँ हम 5 copy करेंगे
फिर arrays dot tostring में marks को marks copy में बदलें
अब program को सेव और now करें
हम देखते हैं कि array marks के elements array markscopy में copied हो जाते हैं
देखते हैं कि यदि हम elements से copied संख्याओं को बदलें तो क्या होता है
5 को 3 में बदलें
सेव और run करें
हम देख सकते हैं कि केवल पहले तीन elements copied होते हैं
देखते हैं कि क्या होता है यदि copied हुए elements की संख्या array के सभी elements की संख्या से अधिक है
अतः 3 को 8 से बदलें
program को सेव और run करें
हम देख सकते हैं अतिरिक्त elements default value set करता है जो 0 है
आगे हम देखेंगे कि values की range को कैसे copy करें
अतः copyof को copyofrange से और 8 को 14 से बदलें
यह method सभी elements को शुरुवाती index 1 और index 3 तक copies करता है
सेव औऱ run करें
हम देख सकते हैं कि elements index 1 से 3 तक copied हो गये हैं
ध्यान दें कि हमने 14 अपने arguments के रूप में दिया है
लेकिन फिर भी index 4 के element copied नहीं होता है
केवल index 3 तक elements copied होते हैं दिए गए range के एक index पहले रूकता है
अतः यह व्यवहार सुनिश्चित करता है कि रेंजेस की निरंतरता बनी हुई है
04 index 0 से index 3 तक सूचित करता है
46 index 4 से 5 तक सूचित करेगा
अतः यह इस प्रकार कार्य करता है यदि 04 + 46 = 05
इसी के साथ हम इस tutorial के अंत में आ गए हैं
इस tutorial में हमने सीखा
class arrays कैसे import करें
array operations कैसे कार्यान्वित करें जैसे to strings sort copy fill
नियतकार्य के रूप में
arrays equals method के बारे में पढ़ें और पता करें कि यह क्या करता है
spoken tutorial project के बारे में अधिक जानने के लिए
इस पर उपलब्ध video देखें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
spoken tutorial project team
स्पोकन ट्यूटोरियल्स का उपयोग करके कार्यशालाएँ भी चलाती है ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को प्रमाणपत्र भी देते हैं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
यह स्क्रिप्ट प्रभाकर द्वारा अनुवादित है आई आई टी मुंबई की ओर से मैं यश वोरा अब आपसे विदा लेता हूँ
धन्यवाद